और नीचे की हम बात करे तो निचे हम काफी स-अ-जमीन देख पा रहें हैं जहाँ पे खम्बा वगैरह लगा हुआ है और इसके नीचे की तरफ हमें मिट्टी पड़ी हुई नज़र आ --

एक चश्मा भी लगा रखा है एक ब्रिज के ऊपर वो खड़ा है जहाँ पे थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है साइड में उसके पीछे की तरफ पानी बहता हुआ हमें नजर आ रहा है और पीछे काफी प्यारा सा उसमें पौध वगेहरा और पेड़ पौधे दिख --

देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वाईट शर्ट पहने हुए एक लड़का नजर आ रहा है जिसने अपने कंधे में बैग भी टंगा हुआ है और नीचे जिन्स की पैंट पहनी हुई है और हाथ में एक घड़ी पहनी है हम देख पा रहे है उसके ठीक पीछे ये दा कुछ दान पर --

हम देख सकते हैं की हमें यहाँ पे जीने नजर आ रहा हैं सीढ़ियां वगैहरा जिसपे जो की टाइटल्स से बनी हुई हैं।

पिक्चर की हम बात करे तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक दुकान दिखाय दे रही है और दुकानों में कुछ फूल पत्तियां अर्तिफिस्यल नजर आ रही है देख सकते हैं यहाँ पर हमे नाई नजर आ रहा है जो की एक लड़के की शेविंग कर --